केले के पौधो में लाल रंग के फूल हुए हैं और सामने पौधे भी लगे हुए हैं लंबे-लंबे और आकाश भी साफ दिखाई दे रहा है और थोड़ी-थोड़ी घास भी लगी हुई है।

यहाँ पर टाईल्स लगी हुई हैं। साईड में पौधे लगे हुए हैं। जिनका रंग जिन पत्तियों का रंग हरा है और यहाँ पर एक कुछ बना हुआ है मकान सा और यहाँ पर बहुत सारे आदमी भी हैं।

यहाँ पर एक बिजनेस जो बिजनेस का घर है और यहाँ पर सड़क भी हुई है। इसके ऊपर से लाइन गई हुई है।

बगल में पौधे लगे हुए है जो हरे रंग के है और यहाँ पर कुछ छ छोटे-छोटे घर भी दिखाई दे रहे हैं। सामने सड़क से दो लोग नजर आते हुए दिखाई दे रहे हैं।

यह एक गेट है। गेट के तरप च् चारो तरप जालियां लगी हुईं हैं और यहाँ पीछे झोपड़ी सी बनी हुई है।